एक लड़की बैठी है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हैं उसके हाथ में कॉफी का गिलास है।

यहां पर कुछ कांच के बोर्ड लगे हुए हैं।

और एक सोफा रखा हुआ है जिस पर कपड़े का कुछ डिजाइन बना हुआ है।

पीछे कुर्सी लगी है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक स्कूल दिखाया गया है जिस पर गुलाबी रंग का पेंट किया गया है।

यह चित्र किसी ऑफिस रूम का है जहां पर एक कुर्सी भी रखी है जिसके आगे एक मेज लगी है।

उसके सामने एक मेज रखी हुई है जिस पर कुछ कलाकारी दिखाई गई है और ये लकड़ी की है।

इस चित्र में हमें एक बेड का सिराना दिखाया गया है।